जो गुलाबी और जो रेड कलर की है जिसमे निचे मैं बहुत से पत्ते लगे हुए है फिर आगे एक बाउंड्री है जिसमे एक छोटा-सा गेट है।

दो तीन दिख रहा है दो साइड से दिख रहा है एक तारा माछी पूरा गोल दिख रहा है फिर साइड मैं --

इस इमेज मैं मुझे एक मैदान दिख रहा है जो मैदान के बीच एक खजूर का पेड़ फिर साइड मैं लम्बे-लम्बे पेड़ दिखाई दे रहे है फिर बादल छाया हुआ है।

फूल का माला पहनाया गया है फिर एक दिवार है जो वाइट कलर की है जिसमे महाराणा प्रताप लिखा हुआ है फिर एक पेड़ दिख रहा है जो टहनी दिख रही है।

के बीच मे एक मैदान सा है जो छोटे बॉउंड्री सा बना हुआ है फिर बहुत लम्बे-लम्बे सीढ़िया है।

झंडे टंगे हुए है रंग-बिरंगे कुछ स्कूटी बाइक निचे रखे हुए है।

ये इमेज जो बिल्डिंग दिख रहा है जो बहोत लम्बा है एक छोटा बिल्डिंग है।

जो बिल्डिंग है उसमे बहोत सारी खिड़किया है जिसमे सब मैं लाइट जल रही यही बिल्डिंग के पास एक बहोत घना सा पेड़ है।